--लाल थैली पास मैं पड़ी हुई है जमीन पर उ पास में थैली में मिर्ची है पास में टोकरी है उसमे आलू है।

यहाँ पर जिम की मशीने रखी हुई है पास मैं कांच लगा है ग्रे कलर की दिवार है ऊपर वाइट कलर की दिवार है।

यहाँ बूक का स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे बुक्स रखी हुई है दो आदमी बैठे हुए है दोनों के अलग-अलग स्टॉल लगे हुए है एक ऊपर --

खड़ी हुई है यहाँ ब्लू कलर की लाइटें जल रही है यहाँ पर डिस्को लाइट जल रही है ऊपर पीले कलर --

एक ब्लैक कलर की रेडिंग लगी यहाँ पर ब्लैक कलर के कार्स भी लगे हुए है पेड़ - पौधे --

--दो कार खड़ी हुई है एक आदमी एक कार को सुधार रहा है और एक पास में उस मोड़ पर वाइट दो आदमी--

--ऑरेंज कलर की है पीले कलर की है ब्लू कलर की है खम्बे लगे हुए है यह ब्लैक कलर की सड़क है यहां पर लाल-लाल खून पड़ा हुआ है।

एक बेसिन बना हुआ है पास में स्टूल रखा हुआ है।

एक लाइट ब्लू कलर का बॉक्स रखा हुआ है और उसके पास में ब्लैक कलर की कार रखी ऊपर वाइट कलर की दिवार है।

और टेंट के बीच में भी एक छोटा-सा पेड़ लगा हुआ है और दो धामे रखे हुए है और एक औरत आते हुए है।

यहाँ कार धूल रही है जोकि --

ये चारो में पाल लाइट लगी हुई है रेड कलर की पट्टी बिछी है बीच में ब्लैक कलर --

के खिड़कियाँ है ऊपर व्हाइट व्हाइट ट्यूबलाइट लगी हुई हैं।

खड़े हुए यह स्पीकर रखे हुए है यहाँ ब्लू कलर में एक स्वागत हो रहा है यहाँ पे एक --

आस-पास बड़े-बड़े पेड़ लगे--